ब्लू कलर का टी-शर्ट और ग्रे की स्कर्ट ।

जिसका रंग पीला और लाल पट्टियों वाला है।

भुट्टो के जो भुट्टे छिले नहीं हैं उनका रंग --

फ्रॉक है और उसके ऊपर कुछ साड़ियाँ लाल रंग की रखी हुई है साइड में बहुत सारे --

जो दर्शन कर रहे है साइड में भी कुछ व्यक्ति खड़े है मन्दिर के ऊपर --

नीले रंग का टी-शर्ट पहन रखा है और महिला ने पिंक --